ये बाग़ भी छोटा सा है इसमें बगीचा भी लगाए हुए हैं।

बच्चा अच्छा से बैठकर झुलुआ झूल रहा है।